तस्वीर में एक बड़ी सी इमारत दिखाई गई है।

दुकान के ऊपर आइसक्रीम का कटआउट लगा हुआ है।

दरवाजे के बाहर एक पोस्टर रखा हुआ है।

जो आठ मार्च दो हजार उन्नीस को खोला गया था।

जिस पर केले टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे बहुत सारी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही है।

चेकिंग की मशीने भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जीसमें उससे जुड़े उपकरण रखे हुए हैं।

इसमें दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक टूटी हुई बाइक दिखाई गई है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में चर पहिया वाहन खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर एक वाटर पार्क की है।

सामने एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे है।

पास में ही गुलदस्ते रखे हुए हैं।

स्पीकर रखा हुआ कुर्सी पड़ी हुई है।

इस तस्वीर में एक जौलरी शॉप दिखाई गई है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

कुछ लोग तसले उठाते दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक व्यक्त बाल्टी से खाद्य को मशीन में डालता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

जिसमें बहुत सारे कर्मचारी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।